एक आदमी जाता नजर आ रहा है।

अह डांस होते नजर आ रहा है।

चारों तरफ कुर्सी लगी हुए हैं।

एरिया है आसपास सुखे घास नजर--

बैंक के नाम से है। यहां ए_टी_एम है।

जहां बहुत सारे बिस्किट नमकीन निरमा साबुन और भी बहुत सारे खाद्य पदा --

मैं देख पा रही हूं यहां एक रूम में--

चारों तरफ पेड़ पौधे लाइन के खंभे आस पास गांव--

बड़ी बड़ी मशीन रखी हुई है ये लाकर टाइप में बनाया गया है।

हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है।